काफी सारे के लाइट लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं जो काफी सूंदर लग रहीं हैं। ये जगह काफी खूबसूरत है। यहाँ पे एक कैमरा स्टैंड भी रखा हुआ है काफी सारे लोग कॉन्सर्ट देखने आये हुए हैं।

सबसे आगे स्टूडेंट के पास से काफी सारे पेपर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ज्योमेट्री हुई दिखाई दे रही है। सारे बच्चे ड्राइंग करते हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है। स्टेज पर एक पर्पल कलर का सोफा रखा हुआ है। यहां पर बहुत सारे येलो रेड और व्हाइट फूलों से सजावट की हुई जो काफी सुंदर लग रही है। यहाँ पर एक येलो कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है। स्टेज पर एक पर्पल कलर का सोफा रखा हुआ है। यहां पर बहुत सारे येलो रेड और व्हाइट फूलों से सजावट की हुई जो काफी सुंदर लग रही है। यहाँ पर एक येलो कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है।

अरे जमीन में बहोत सारे बाल पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने एक शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बहोत सारे ये बॉटल रखी हुई दिखाई दे रही हैं। काफी सारे स्प्रे बॉटल रखी हुई हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग फोटो क्लिक कराते हुए दिखाई दे रहे है पीछे एक स्टेज बना हुआ है जिसमे काफी सारे मूर्तियों के पिक्चर्स बने हुए है जो काफी सुंदर लग रहे है यहां पर एक शिवजी का भी पिच्चर बना हुआ है जिसमे उनके पीछे एक बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ दिखाई दे रहा है।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

यहाँ पर काफी सारी बुक्स रखी हुई हैं। एक बोर्ड लगा हुआ है एक लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

जिनके मास्क लगा हुआ है वो कंप्यूटर में कुछ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे एक ब्लू कलर का पर्दा डला हुआ है दो मरीज खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।